सामने एक वाइट एंड रेड कलर का दीवाल नजर आ रहा है।

लाल कलर का पंडाल लगा हुआ है सामने--

साइड में एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने एक हॉल नजर आ रहा है वाइट कलर का दीवाल है जिसमें खिड़की लगी हुई है हरे रंग का पर्दा लगा नजर आ रहा हैं।

यह जिम है पीले कलर के कुछ बना हुआ है।

मशीन दिखाई दे रही है मंदिर बना हुआ है टेबल का स्पीकर दिखाई दे रहा है।

मशीन दिखाई दे रही है जमीन में भूरे रंग का कारपेट बिछा हुआ नजर आ रहा है।

एक पैदान बिछा है हरे रंग का।

बाहर रेड कलर का दीवार नजर आ रहा है।

बड़ासा ग्राउंड है जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए।

सामने ग्रे कलर का दिवाल नजर आ रहा है जिसमें लाल रंग से आनंद लिखा हुआ है कांच का कुछ बना हुआ है।

एक लोहे का कुछ बना हुआ है।

कार वाइट रंग की जाती हुई दिखाई दे रही है।

दो लोग चटाई बिछा के ऊपर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक टेबल पड़ा है ब्राउन रंग का।

जमीन में व्हाइट कलर की टाइल्स बिछी हुई है पायदान बिछा नजर आ रहा है भूरे रंग का पलंग है जिसमें व्हाइट कलर का गद्दा बिछा हुआ हैं।